ब्रिज का काम चल रहा है लाइट्स दिख रही हैं मशीनस हैगी ।

उसके ऊपर झंडा लगा हु हुआ हैं एक आदमी है ब्लैक और पिंक --

टी-शर्ट्स और पैंट में एक लड़का खेल रहा है एक पानी की बोतल है टेबल है एक चेयर चेयर्स हेगी ।

एक रेस्टोरेंट है जिसमें प्लांट्स लगे हुए हैं टेबल है ।

फिर उसके बाद दो चेयर जिसपे खूब सारी चेयर है। लाइट्स से जी--

ये मार्केट है जिसमें टमाटर है प्याज है।

ब्राउन केरट है ऑरेंज केरट है ब्लू केरट है रेड केरट है।

कुछ जार्स के अंदर सामान रखा हुआ है कढ़ाई टाइप का रखा हुआ है क्यू_आर लगा हुआ है।

यह एक फाउंटेन शो चल रहा है फाउंटेन दिखाई दे रहा है ।

महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर सिविल सर्विस है महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है ।

ये प्लांट्स लगे हुए हैं स्काई दिखाई दे रहा है ।

मंगलम शादी हॉल पाटी हॉल का होडिंग लगा हुआ है।

छठ पूजा का दिख रहा है पूरा एक औरत बैठी है चुन्नी ओढ़े हुए एक ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए।

उधर ब्लू कलर की टी-शर्ट पहने एक लड़की है ।

एक आदमी दिख रहा है चड्डी पहने हुए कुछ लेडीज हैं।

फ्रंट है उसमें टेबल है टेबल के साथ चेयर है ग्रीन कलर की रेड कलर की --

जिम मे लड़की दिखाई दे रही है एक रेड टी-शर्ट उसके गले मे काला धागा है ये --

एक्टिवा रखी है साइड में भी बाइक रखी हुई है टॉयज रखे हैं बहुत सारे एक बॉक्स के ऊपर भी टॉय रखा हुआ है ।

रेड और येलो कलर की बिल्डिंग होती है गमले में पेड़ लगे हैं कूलर लगा हुआ है खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ।

कार है कार पे पेंटिंग करते हुए डेटिंग करते हुए आदमी है टायर है टायर में अलौय लगा है।

पार्क है पार्क के अंदर बहुत सारे --

वाइट टाइल्स लगे हैं बैनर लगा है पत्थर लगे हैं ।

ग्री पिंक कुछ मैट्स पड़े हुए हैं ।

किसी ने शायद पत्थर फेंका है चेयर रखी हुई है दूरी पे एक वाइट कलर की--

एक पूरा कैमरे का स्टैंड रखा हुआ है ।

के स्केच रखे हुए हैं एक लड़की हेड डाउन करी हुई है कंपास रखा हुआ है वो वाइट मौजे पहनी है ब्लैक शूज पहनी है।

टेबल पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं ।